काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका स्ट्रॉन्ग पावर काफी तेज होती है साथ में एक बाइक खड़ी है जो कंस्ट्रक्टर डिलर की होती है जो--

यह एक चौराहे के खेत के सामने एक गींगी अम् बरगर बरगद का पेड़ है बरगद बगल में ही एक के--

ये एक का जिम है जिसमें तीन कार्डियो और चार ट्रेडमिल रखे और यहां पे लोगों को कसरत करने के लिए अ--

कस्टमर के लिए सजा रखा एक ड्रेस का शोरूम है।

यह तस्वीर में एक ई कॉमर्स शॉप की फोटो है जिनमें के--

ये एक का गुरुद्वारे का पिक है जिसमें काफी सारे सरदार जी और उनकी वाइफ लेडीज --

यह एक करियर काउंसलिंग की ऑफिस है जिसमें एक पोस्टर पेंपलेट लिखा हुआ चूस योर करियर वाइसली --

इधर एक गाड़ी है जो से कनेक्ट करती है उसके पास भी कुछ गाड़ियां खड़ी है।

बच्चे रेलिंग पे खड़े हो के मोटरसाइकिल लगी हुई है उसको देख के आनंद पूर्वक आकर्षित हो रहे है।

यह एक दफ्तर है जहां पे किताब कॉपी तथा चेयर टेबल और पानी को ठंडा करने के लिए मशीन लगा--

जहां पे बड़ी गाड़ी से समान निकाल कर छोटी गाड़ी में समान को रखा जा रहा है।